को बना रहे हैं | यहाँ पर एक आदमी भी खड़ा है और एक यहाँ पर पेटी भी पड़ी हुई है ।

यह एक खेत है इसमें बहुत सारी घाँस है और दूर से बहुत बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहाँ पे पोल भी बने हैं बोर्ड भी लगे हुए हैं। और एक ट्रक खड़ी हैएक बाइक खड़ी हैएक बाइक सवार जा रहा है और अच्छा लग --

यहां पे बहुत सारे फूल लगाए गए हैं और इस को बहुत अच्छे से सजाया गया है लगता है ये हॉल --

खेत में जो हरी हरी अं धान लगे हुए हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है और खेत के दूर पेड़ जो बड़े बड़े हैं वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं।